लंबे लंबे पेड़ है सामने वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है।

स्क्वायर शेप में है कुछ राउंड शेप में रखा हुआ है।

एक लड़का खड़ा है वो रेड कलर के टी-शर्ट पहना है नीचे--

सीन रखी हुई है जिम वाले कर्टन दिख रहा है लाइट्स लगी हुई है--

सामने बिल्डिंग दिख रही है बिल्डिंग में सीढ़ियां लगी हुई है।

बैक में बहुत सारे बच्चों के टॉइस रखे हुए हैं।

और और स्टील का स्टैंड बना हुआ है सीढ़ी दिख रही है।

एक की बोतल रखी हुई है काउंटर के ऊपर बहुत सारे --

यहां सामने मुझे बहुत बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है।

ऑपरेट कर रहा है सिस्टम को पंखे लगे हुए हैं।

सामने पेट्रोल पंप दिख रहा है पेट्रोल डालने वाली मशीन रखी है।

बिजली का खंभा है जिसमें बहुत सारे वायर फ्यूज लगे हुए हैं।

ए-सी लगा हुआ है बिजली का खंबा दिख रहा है जिसमें ट्रांसफार्मर रखा हुआ है।

और शर्ट पैट पहना है पीछे बांध दिख रही है।

और लोहे के बहुत बड़े-बड़े अ मशीनी दिख मशीनें दिख रही हैं।

ये बहुत सारी लेडीज हैं जो कि वाइट कलर का दुपट्टा से सर कवर किए हुई हैं सामने गेट दिख रहा है मुझे गेट के सामने दो लोग खड़े हैं।

यहां सामने मुझे एक बड़ा सा हॉल जैसा दिख रहा है।

और रॉड रखे हैं वेट रखा हुआ है नीचे मैट विछी हुई है।

और सामने बहुत सारे कर्टन लगे हुए हैं ट्रांसपेरेंट मिरर लगा हुआ है।

लाइट्स लगी हुई है डिजाइनर लाइट्स नीचे मार्बल बिछा हुआ है।

नीट एंड क्लीन है टेबल पर टिश्यू पेपर रखा हुआ है।

गोल गोल्ड रिंग में लाइट्स लगी हुई है डिजाइनर टेबल रखा हुआ है फ्रेंच टाइप में--

रेड कलर की मैट बीछी हुई है और रैक में बहुत सारे शूज ओपन करके सजा के--

सामने रैक दिख रहा है वहां पे भी कपड़े फोल्ड करके बहुत सारे रखे हुए हैं साड़ियां टंगी है वॉल पे--

लकड़ी के डंडे दिख रहे हैं और सामने कुछ लोग खड़े हैं गाड़ियाँ दिख रही हैं और सामने बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ऊपर।

तार लगे हुए टावर दिख रहा है मुझे पेड़ पौधे लगे हुए दिख रहे हैं।

स्टेबलाइजर लगा हुआ है बहुत सारे जो टेबल रखे हुए चेयर रखे हुए हैं।

क्या हाथ में कॉपी है सामने एल_सी_डी दिख रही है।